यहाँ देखिये जवानों भी आते हैं साइकिल खरीदने के लिए यहाँ किसी भी साइकिल की कमी नहीं।

यह देखिये सीढ़ी आर भी लगा हुआ है बहुत अच्छा है।